और वो मैदान हरे-भरे घासो से भरा हुआ है।

और मुझे एक चर्च प्लस शाइन भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग योगा करते हुए दिखाई दे रहें हैं।

और एक मूर्ति भी दिखाई दे रही है।

की सर्विसिंग होती दिखाई दे रही है।

यह फोटो ऊप्पर से ली गयी है।

यहाँ पर मुझे एक ऑटो की एजेंसी दिखाई दे रही है।

और उस स्टेचू के नीचे पे काला कलर से कुछ लिखा हुआ है।

श्री-श्री राधा कृष्णा बलराम मंदिर।